इस तस्वीर में फल के कैरेट दिख रहे हैं जिसमें से अनार केला आदि बहुत कुछ रखा हुआ है।

यहां पर एक टब में पानी रखा हुआ है जिसमें मछलियां दिख रही है।

यहां पर एक खिड़की दिख रहा है जिस पर पर्दा लगा हुआ है।

इस कमरा में एक डैक्स लगा हुआ है।

बिल्डिंग के बगल एक हेवन पैलेस है।

इस तस्वीर में एक मस्जिद भी दिख रहा है जिस पर चोगा लगा हुआ है।

इस ढाबा के ऊपर देहाती ढाबा लिखा हुआ है।

टेबलों पर टिशू पेपर बरतने और शीशे का ग्लास रखा हुआ है।

वह अपने हाथ में एक बुक पकड़ा हुआ है जिस पर एवरी मैन वार लिखा है।

इस तस्वीर में एक स्टेशनरी का दुकान दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक चाय कैफे दिख रहा है इस कैफे में एक काउंटर पर दो स्कैनर सेलो टेप और एक कॉपी रखा हुआ है।

यहां पर लाइटें भी जल रही है।

जिसमें बहुत सारे कैनेडियन श्रिंप दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में टेबलो पर मशीन और टूल्स रखे हुए हैं।

यह एक कोचिंग का तस्वीर है इस कोचिंग में बेंचे और कुर्सियां लगी हुई है।

इस दुकान में लाइटें जल रही है।

यहां पर एक जनरेटर भी दिख रहा है गेट के बाहर कुछ स्कूटीयां खड़ी है।